और दो-तीन लड़की हस भी रही है। अरे यहां क्या लिया यार तुम लोग मुझे। मजा नहीं आ रहा है यहां पे।

इस पिक्चर में मुझे एक मार्केट दिख रहा है यहां बहुत सारे इंसान आ रहे हैं जा रहे हैं।

बहोत से इंसान अपना मार्केट पे अपना ठेला पे सामान बेच रहे पकौड़े--

और डिस्कसन कर रहे हैं भाई देख मैं भी जिम कर रहा हूँ दो तीन साल से वो अपना अपना डिस्कसन कर रहा है कब कितने साल से जिम कर रहा है।

दुकान दिख रहा है जिसके सामने बड़ा सा पोस्टर है जिसमे लड़का लड़की एक दूसरे को पकड़े हुए है जोर से--

लाइट मीटिंग बहुत खतरनाक हैं बैक ग्राउंड बहुत अव्स्म हैं माइंड ब्लोविंग स्टैं आउटस्टैंडिंग चेयर का तो बात ही लाजवाब हैं।

और ये जो हाफ पहनते हे बंदा मुझे बोहोत स्मार्ट लग रहा हे ब्लेक ब्लेक हे ब्लेक लवर हु में --

जो की साडी लेने आया है और जेन्ट्स उसके दिखा रहा है कि साडी ऐसे हैं सस्ता है जहां पचास रुपये सौ रुपये और बहुत बड़ा शोरूम है ।

ये फोटो दुर्गा पूजा का दिख रहा है मुझे जहां के बहुत सारे पुजारी हैं भक्त लोग हैं भाई लोग हैं।

और इस फोटो में मुझे माँ दुर्गा हनुमान जी शंकर भगवान--

देख के मन कर रहा है अः की वहा चले जाए पर जा नहीं सकते है ना जय माता दी।

और टेबल और बेंच का जो सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत खूबसूरत है और यहां का नजारा भी बहुत अच्छा दिख रहा है खिड़की के से।

और क्लास का जो कलर है वो वाइट है और बहोत खूबसूरत लग रहा है देखने में।

इसकी यहां का हवा बहुत खूबसूरत है बहुत स्वच्छ है।

इस पिक्चर में मुझे सो रू आ गैरेज दिख रहा हैं जहां कि फोर व्हीलर का रिपेयरिंग होता हैं दो बंदा एक कार का रिपेयरिंग कर रहा हैं नीचे से--

इस पिक्चर में मुझे पेट्रोल पंप का नजारा दिख रहा है जहां की पांच छह लगातार लाइन में फोर व्हीलर होंडा सिटी --

इस फोटो में देख कर समझ आरहा है की चंडीगढ़ का फोटो है।

जोकि मुलानपुर में है वो यहा जो डोक्टर है बहोत अच्छा डोक्टर है मेने उसे बहोत बार मिला हु अच्छा काम करता है ये बैंक ऑफ़ बरोदा के बगल में है।

और ये डॉक्टर थोड़ा एजेड है म अच्छा काम करता है।

इस पिचर में मुझे समज आरा हे की बोहोत बड़ा दो चार बिच में होल भी हैं।

और यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छी हरियाली है नज़ारा बहुत खूबसूरत है आई लव दिस पिक्चर --

और आज की दोपहर का टाइम लग रहा हे और बादल गिरा हुआ हे और एक काला कौआ हे जो उड़ रहा हैं।

यहाँ केला है संतरे है बरे बरे नारंगी है सेब है अंगूर है छोटे छोटे और यापे इसे की बोलते है कीबी है।

और यहां पे स्कूटी है दो तीन बंदे जो अपने गाड़ी को सर्विस सेंटर में रखने और कुछ इस पूछने आए है। किसी गाड़ी का सर्विस फेल हो गया होगा।

कुछ पंडित जी हैं आशीर्वाद दे रहे हैं बहुत अच्छा नजारा हैं आई लाइक दिस इस फोटो को देख के मुझे अपने गाँव की याद आ जाती हैं आई लव गाँव--

पार्क का लग रहा है जहा पे पार्क लिखा हुआ है बहोत अच्छा पोर्ट बना पड़ा है पेड़ पोधे पूरा हरियाली है यहा का जो मेंटेन किया गया पेड़ पोधो को बोत अच्छा है।

और दो तीन बन्दे है जो ऐसे देख रहे है की निचा खुदाई करना है।

आप लोग को भी जाना है तो यहां जा सकते है। छोटा सा दुकान है बट प्यारा सा है।

बच्चो को मेम न-नगरानी रखी है की बच्चे बदमाशी ना करे गेट भी लॉक है।

और ठंडिया का टाइम है कुआ सा लगा पड़ा है सुबह का टाइम लग रहा मुझे।

और कंप्यूटर लगे हैं सबके एक बन्दे अन्दर आ रहे हैं अपना कुछे समस्या बताने।

और यहाँ पे एक बन्दे हैं जो समस्या सुन के उस समस्या को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ है रेड कलर से।

इस पिक्चर में मुझे पहाड़ दिख रहा है जहा पर पहाड़ से पानी गिर रहा है और जो वो पानी नदी में जा रहा है पहाड़ के उपर हरियाली हरियाली पेड़ पोधे है अ टूटे टूटे--

इस पिक्चर में मुझे दिख रखा है कोई घूमने का जगह है जहाँ पे ऊपर एक कोहरा का पिक्चर बनाया हुआ है मिट्टी से।

और दो चार झूले लटके हैं जहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं और दो तीन बन्दर झूले को झुला रहे हैं और अच्छा लग रहा है देख के।

इस पिक्चर में मुझे बहुत सारे कार दिख रहे हैं लगता है कहीं ह--